उसका साइड में व्हाइट टेबल पर जूते भी रखे हुए हैं।

हमें चार तीन गेट दिखाई दे रहे हैं।

यह पारक का नाम विनोद बिहारी महतो पारक है।

और वो आदमी ये ये आदमी एक हाथ में ब्लू कलर का शर्ट पहना है।

साइड मे एक रखने वाला टोकरी भी है।

उसका एक बड़ा सा गेट है।

बड़ा गेट का बगल में साइड में बीच में एक छोटा गेट भी है।

जोकि लिखा हुआ है बाहर एक पुतला खड़ा हुआ है।

उधर सूर्य ऊगा है।

यहां पर यात्री लोग के ठहरने का उत्तम प्रबंधहै।

आठ मोटरसाइकिल हैं।

और एक स्कूटी है।

और इसका कलर रेड है और जमीन छिला हुआ है।

साइड में टाइल्स है।

और एक टेंट लगा हुआ है जहां पर--

बिल्डिंग में शीशा का कांच लगा हुआ है।

उसके साइड में घास है और कई बड़े बड़े बिजली के खंभे हैं जिस पे लाइट लगा हुआ है।

और दो आदमी उधर जा रहे हैं।

यह एक सीढ़ी जैसा चडऩे का है।